पुलिया बनाया हुआ है यह पुलिया नदी के ऊपर से बनाया गया है इसके निचे से --

जिसके अंदर एक मूर्ति लगाई हुई है यह पूरा --

रौशनी से जगमगा रहा है रात के समय में।

सभी परकार की स्विफ्ट डी सुज़ुकु की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर।

इनके अंदर तेल और मरमत की जा रही है इस साइड में।

लगा रखी है फूल भी लगा रखी है यह बहुत सुन्दर बना रखा है।

राइट में अलग-अलग तरह की मैगज़ीन बुक्स रखी हुई है लाइब्रेरी के अंदर।

प्यारे-प्यारे फूल लगा रखी है पार्क में पानी खुला छूटा हुआ नजर आ रहा है।